और पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है रेस्टोरेंट भी है यहां मैरेज हॉल भी है रिजॉर्ट भी है।

बेल्ट है कुत्ते के बिस्किटस् है से पट्टे हैं कुत्ते के--

डेकोरेशन हो रखी है और लाइटिंग है यहां पे लोग वर्कर काम करते हैं काम करेंगे काम करेंगे--

कमरा हैं गाड़ी है डिजाइनिज गाड़ी है स्टाइलिश गाड़ी है लाइटे जल रही हैं गाड़ियों में लाइटें हैं।

यहां पे एक दुकान है आस पास बगल में भी दुकान है खंभा है।

और सीमेंट की छत बनी हुई है एक तीन कुर्सियां है रेड कलर की।

सूखे पत्ते है नीले पत्ते हैं और एक जंगल है लकड़ी है।

लाइटिंग बहोत अच्छी है बहोत ही साफ सफाई है अच्छा दिख रहा है यहां पे तो बहोत--

ये एक हॉल है हॉल के अंदर बहोत बड़ा पोस्टर लगा है यहां पे बहोत कुछ लिखा हुआ है सामने लोहे की छत है।

एक रेड कलर का वो है ड्रम ।

नाव में लोग खेल रहे हैं नाव में लोग घूम रहे हैं मस्ती कर रहे हैं।

और यहां पर जंगल है और एक पीछे घर बना हुआ है अलग अलग झूले हैं।

पाउडर आयुर्वेदिक तेल है लोग मसाज करते हैं तेल से क्रीम है प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल है।

बस खड़ी है। बस के अंदर स्कूल के बच्चे जाएंगे। पढ़ाई करेंगे।

और सामने पीले कलर का घर है पुराना घर है।

मशीन भीं खरीदनी हैं फ्रिज भीं खरीदनी हैं टी_वी खरीदनी हैं।

ये एक जंगल है यहां पे चिड़ियाघर है बाहर एक तार लगा हुआ है जाली लगा हुआ है अंदर एक मोर है।

यहां पर मंदिर है एक लकड़ी का कावड़ रखा हुआ है बहोत सारे सामान है।